यहाँ बस देख रहे होंगे इतनी सारी सीटें हैं और यहाँ रखने के लिए सामान है ए_सी भी लगी हुई है।

ये पाइप देख रहे होंगे ब्लू कलर में लगे हुए हैं।

और यहाँ देख रहे होंगे साइकिलों भी रखी है वायरिंग भी हो रही है बैठे हैं ये भैया लोग और यहाँ पेड़ भी दिख रहें होंगे।

ये देख रहे होंगे एक तालाब और ये लोग यहाँ जहाज पे खड़े हुए है ब्लू कलर का जहाज है ।

ये ऑरेंज देख रहे होंगे हम और यहां अनार भी है सेब भी है।

पानी देख रहे होंगे आप कितना भरा हुआ है बहुत बड़ा तालाब है और यहाँ पेड़ भी दिख रहे होंगे आपको यहाँ फूल-ऊल भी लगे हुए हैं मस्त यहाँ छोटी सी बाउंड्री है वहां भी पेड़ बहुत है।

और सामने दुकान देख रहे हो अभी बैठे है कुछ लोग और मच्छी भी ले रहे हैं बहुत से लोग।

दिख रहा होगा यहाँ गारटन लगे हुए है और उस के उपर जाली बिछी है।

और यहाँ बहुत सारी मशीने है और यहाँ रेड कलर का कलर पुता हुआ है यहां दिवालो में एक वॉच है मशीने रखी हुई है।